यहां पर काफी सारे लाइटे जलती हुई नजर आ रही है हेलमेट रखी हुई है।

यहां एक तालाब पर पानी भरा हुआ है।

यहां एक आदमी कॉफी पीता हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर इलेक्ट्रिकल पैनल कंट्रोल की है।

यह एक कार भी दिख रहा है।

यहां पर कुछ मोटरसाइकिल भी रखी हुई हैं।

यहां पर जमीन की नपाई चल रही है।

यहां विधानसभा भवन परिसर लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर बैंक आफ इंडिया लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के छत पर अल्वेस्टर लगा हुआ है।

यह तस्वीर ग्रोसरी दुकान की है।

यहां पर काफी सारे आटा के पैकेट और चावल के पैकेट हैं।

यहां पर कुछ फेस वॉश भी रखे हुए हैं।

यहां कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

यहां टाइम जोन लिखा हुआ दिख रहा है।

आदमी के टी शर्ट पर नाइंटी सिक्स लिखा हुआ है।

यहां डस्टबिन और बाल्टी भी नजर आ रही है।